यह फोटो है किसी फ्रूट शॉप कि है जिसके अंदर एप्पल्स ऑरेंजेस और बनाना और काफी

यह फोटो किसी जो पहाड़ है वहां लग रही है इसके आसपास काफी पत्थर वगैरा --

यह फोटो किसी हॉस्पिटल या किसी रेलवे स्टेशन की लग रही है जो फिलहाल एकदम खाली पड़ा है।

जिसके अंदर और ऐसा देख से प्रतीत होता है कि ये जो है अभी ही फिलहाल का नया खुला गया है।

और जो दफ्तर के आसपास कुछ पेड़ वगैरह दिखाई दे रहा बाकी ऐसा कुछ --

और जो खास इसके अंदर जो हमें घर वगैरा देख के कुछ खास तैयारी वगैरा नहीं लगती एकदम सामान्य सा मध्यम वर्ग का जो भी फैशन --

और जो हैं दुकान के आस पास कोई खास रौनक और कोई खास बड़ी कोई चहल पहल वगैरह नहीं दिख रही।

और जो सामने जो है काफी जो--

न मशीन में जो अपना काम है करते हमें दिखाई दे रहे हैं और जो काफी ढके ढाके से एरिया के बाहर हवा --

जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो ताजे ताजे फल है।

स्टेशनरी मटेरियल आपको सारी जो है प्रोवाइडेड हो सकती है यहां पे और जिस हिसाब से दुकान है बड़ी है।

जिसके अंदर आपको सारे जो गाड़ियों के कवर सीट और जो भी मेंटेनेंस की चीजे है हमे सामने दिखाई दे रही है।

फोटो है काफी जो है हमें सुंदर लग रही है जिसके अंदर आपको जो एक साइड जो चट्टानों का व्यू है वो दिख रहा है पहाड़ों का।

जो हरियाली है बहोत ही ज्यादा आपको अलग अलग तरह के पेड़ वगैरा दिख रहे हैं बहोत ही सुंदर है।

ऐसा लगता है कि ये किसी ऊंचाई पे जाके फोटो जो है खींची गई है और जो मौसम है काफी सुहाना सा --